लाल कलर के पूता है। तीन लाल कलर के अंदर मे का चीज है

पानी हे नीचे में मस्त दिखत हे फूल हे लाल कलर के पत्ती गुलाबी कलर के या हे म कलर के वो हे।

नीचे हा पूरा भूरा दिखत हे लात लरके हे रे कूलर हे खिड़की हे।

मंदिर हे और काची दिखत हे अम्म हरा कलर के सफ़ेद कलर के बरे जान मंदिर हे ऊपर दि --